इस फोटो में दिखाया गया है कि यह इंडियन फ्यूजन रेस्टोरेंट और कैफे है।

वैसी फोटो आपको दिखने को मिलेगी और सभी प्रकार के क्लोथ्स और भी सामान--

चित्र में दी गई फोटो एक बहुत बड़े सारे समुद्र की है जहां पर दो आदमी --

इस चित्र में एक मस्जिद दिखाया गया है जिसका अभी निर्माण होना बाकी है।

उस स्टेशनरी की दुकान में एक सफेद पेज वाले पेजों का बंडल पड़ा है।